ईट के बने हुए खम्बे दिख रहे हैं। इसके बीच में एक बोर्ड लगा है। जिस पर माउंट लिटरैला लिखा हुआ है।

और साउंड के बॉक्स रखे हुए हैं एल.ई.डी टी.वी लगी है बहुत सारे --

डेस्क और बेंच लोहे की रखीं हुई हैं जिसपर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। सभी बच्चे अपना-अपना कुछ प्रोजेक्ट का काम करते हुए दिख रहे हैं।

और इस भवन में सबसे ऊपर एक क्राइस्ट का --

बहोत सारी घांस है बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं। कुछ बिजली के खम्बे दिख रहे हैं। बिजली के तार दिख रहे हैं।

अजन्ता डेरी के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए --

पेचकस नट नीचे रखे हुए हैं और भी कुछ और कुछ टायर नीचे रखे हैं कार के सामने --

इसके बाहर एक चैनल गेट के बाहर एक गाडी खड़ी है। एक आदमी खड़ा है एक आदमी अंदर की तरफ जा रहा है। दो लोग और खड़े दिख रहे हैं।

बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जिस पर स्वीट्स कार्नर लिखा हुआ है सामने की तरफ बिल्डिंग में कांच लगे हुए हैं।